और दीवार पर एक बैनर लगा हुआ है जिस पर चौबीस कैरेट शुद्ध सोने व चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता लिखा --

और इसकी साइड में एक लोटने के लिए बेड है जिस पे तकिया रखा हुआ है।

एक बुक सेंटर किताबो की दुकान जिसके सामने बहुत सी किताबे रखी हुई है।

और एक व्यक्ति बैठा हुआ है जो शायद उन किताबों को बेचने के लिए बैठा है।

यहां पर सफेद कलर की छोटी और बड़ी बहुत सारी मच्छी है जो अलग अलग क्रेट में रखी है।

तीन चार कुर्सियां पड़ी है एक मेज पड़ी है उस पर दो आदमी बैठे हैं उनके ऊपर एक पंखा लगा हुआ है। और--

इनके पीछे एक लड़का खड़ा है जो पीले कलर की टीशर्ट पहनी हुई है।

तीन रैक में तरबूज रखे हुए हैं और ऊपर थोड़ी तरबूज और एक थोड़े केले रखे हुए।

एक दुकान या शॉप है जिसके अंदर दो तीन आदमी खड़े हुए हैं एक आदमी सामने खड़ा है और उस दुकान के अंदर एक घड़ी लगी हुई है।

साइड में हरे रंग का घास जो आर्टिफिशियल घास लगा हुआ है।

यहां पर एक पेड़ खड़ा हुआ है ऊपर कुछ तार बंधे हुए हैं।

एक गाड़ी मैग्निटी लिखा हुआ है।

इसके बाहर एक बाइक खड़ी है और इसके गेट लोहे के बने हुए है।

इस पर एक व्यक्ति बैठा है इसका बैग लाल है उसके सामने एक आदमी खड़ा है।

और एक खंभे पर बैनर टंगा हुआ है।